यह एक गाय है गाय हिन्दू धर्म मे बहुत ही पवित्र मानी जाती है। गाय मालिक एक व्यक्ति और --

मन्दिर मन्दिर का गेट बिल्कुल बहुत ही अच्छा त्रिकोण आकार का गेट बना हुआ है। गेट से अंदर देखने पर बहुत ही विशाल गेट से अंदर दिख रहा है। अंदर एक मन्दिर है विशाल पेड़ लगा हुआ उसके पास छोटा पेड़ लगा --